बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग देखने में बहुत खुबसूरत है बहुत अच्छा है।

और मेरे ख्याल से एक कॉलोनी के जैसे है या रेलवे कॉलोनी हो या कोई सरकारी जगह हो देखने में बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है।

जो लगता है कोई काम से आए होंगे या कोई प्रोग्राम होगा बहुत बड़ा हॉल है हॉल के अंदर में बहुत सारे आदमी हैं।

ये माताजी जी का फोटो तस्वीरे है जो मां भगवती जी की है।